एक ऊपर में बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है एक नीचे में भी बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है जय राम मेडिकल हॉल ।

कार का पीछे वाला डिग्गी भी खुला है।

इस पे गोल्डन कलर से लिखा गया है इसके ऊपर नीचे दोनों भाग में लाइटें जल रही हैं।

जो की व्हाइट और रेड कलर से बनाया गया है।

कुछ लिखा हुआ है इस ऑफिस में जगह-जगह पंखे लगाए हुए हैं।

यह कोई घाट का दृश्य है।

बहुत सारे लोग अपने हाथ में अगरबत्ती लिए हुए हैं।

दो तीन बेंच और कुछ दूर पर दिखाई दे रहे हैं यहां पे गार्डन है।

यहां पे कुछ मच्छड़ वाले अगरबत्ती भी दिखाई दे रही है और भी नीचे बहोत सारा सामान बिखरा हुआ है।

जो कि कुछ काम कर रहे हैं।

यह एक कार का दृश्य है जहां पे बहुत सारे कारे दिखाई दे रही है।

कुछ मशीने दिखाई दे रही है।

इस क्लिनिक को उजले कलर से पेंट किया गया है।

और इस आंगन के सामने में एक घर दिखाई दे रहा है जोकी उजले कलर से पेंट किया गया है।

और उनके बगल में बैग जैसा कुछ रखा हुआ है और कुछ किताब की तरह भी।

साधु संत ने ने एक ही रंग के कपड़े धारण किए हुए हैं।

टूथब्रश भी दिखाई दे रहा है।

जो कि बाहर में लगा हुआ है।

यहां पे कुछ दूर पे घर भी नजर आ रहे हैं।

और ये पानी बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है।

इस दृश्य में एक नदी दिखाई दे रहा है।

भी कई सारी चीजे हैं मिंट एयर है जोकि गाड़ी में लगाया जाता है बल्ब है।

और भी कई तरीके की सामने है जोकि--

पे काफी लंबा चौड़ा अलग अलग तरीके के बासे लगाई हुई है अलग अलग तरीके से--

बाइक पे कुछ लोग बैठे हुए है।

यह एक वाटर पार्क का दृश्य है।

काफी लोग हैं जो की चल रहे हैं।

इस दृश्य में बहोत सारी समाने दिखाई दे रही है।

मसीन भी दिखाई दे रहे हैं जो कि नीचे रखा हुआ है।

यहाँ पे कई तरीके के ब्लैडर भी मौजूद हैं कार्टूंस हैं।

इस दृश्य में खुला नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

इस साड़ी में बहोत ही खूब सुरत डिजाइन किया हुआ है।

और यहां पे अन्य कई गल गाला की सेट नजर आ रहे हैं।